बहोत ही बड़ी बनी हुई है यहाँ पे मंदिर जो और उसके बगल में और एक मंदिर बनी हुई है।

यहाँ पे कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं और साइड साइड मे कुछ घरे भी बनी हुई है।

सभी का एक ही कलर मे पेंट किया हुआ है यहाँ पे खंभे मे लाइट भी लगी हुई हैं।

बोहत ही पुराना किला होगा यहाँ पे देख सकते है ये सब यहाँ लोग घुमने के लिए आते है किला जो कि पुरी तरह से--

मंदिर के चारो एक एक बॉण्ड्री लगाई गई हैं ये मंदिर के चारो ओर--

ये डस्टबिन को देख के लग रहा हैं की ये एक सड़क मे चल रहा हैं मैन रोड पर जो की है ये तसवीर को लिया गया होगा--

यह तसवीर को देख के लग रहा है की यह मुझे कोई घाट का सीन लग रहा है यहाँ पे हम देख सकते है घाट--

कॉपी कलम किताबे ओर पेपर भी रखे गये है कुछ अलग-अलग प्रकारे कितम कुछ कॉम्पिटिशन लेवल के कुछ स्टँड के कुछ एलेव्न कुछ कुछ टुवेल के--

ये कोई खटारा कार दिखाई दे रहा है यहाँ पे खटारा कार जो कि बिलकुल आगे का पाटस सब बिलकुली खराब हो चुका है।

ये बस स्टँड का मुझे लग रहा हैं ये बस स्टँड का ही सीन हैं आप दख सकते है एक पुरानी सी बस खड़ी हुई है।

ये तसवीर को देख के लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो की हैं स्कूल से इन लोगों को अच्छे-अच्छे--

पोल भी नज़र आ रहा है उसमे ट्रान्सफफर भी नज़र आ रहै हमने--